बि घर के माइन बूढ़ा और एक बूढी बैठा है और बे भारतीय बैंक के बार बैठा है बाक हाथ में थेलिया है।

पीछे घर के सामने कुछ चार पाच आदमी खड़े है और वहा पे गुबारों की बढ़िया सजावट करेड़ी है।

और तीन आदमी बी के सारे खड़ा है। और रक्तदान समूह --

और गाडी साइड में खड़ी है और पीछे एक लकड़ी को खम्बो है बड़ो सारको।

ई चित्र के माइन एक दुकान पर तीन आदमी बार खड़ा है सामन लेरा है।

छोरी टेबल पर बैठी है छोरा न देख रही है।

और लोग बाग खड़ा है आधा स्टेज पर आधा नीच घणा सरका लोग आदमी खड़ा है।